चार चका है एक टेम्पू में एक आदमी बैठे हुए हैं आके।

यहाँ आसमान उजला है | आगे एक पोल है | एक साइड --

ठंडा सब रखा हुआ है ।

और उपलध है बेड डाला हुआ है ।

डूब रहा है और अ ऊपर आसमान नीला है पानी बह रहे हैं।

एक टावर है वह एक व अ ब बड़ा सा गा --

बोहत पेड़ है बड़े-बड़े छोटे-छोटे

जिसमें सब खेल रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ हैं ।

एक दुकान है फोर जी कंपनी का।

सीरीज बॉल से सजाया हुआ है पीछे --

एक बच्चा दूसरे बच्चे के हैंडीक्राफ्ट को देख रा --

टेबल है व्हाइट कलर का ।

अंगूर है ।

पक्की सड़क है | वहाँ पर कुछ लोग हैं | पेड़ खम्बे हैं म म कुछ --

बगल में बाउंड्री के बगल में पानी --

करकट खूम डाला हुआ है बुक्स स्टॉल पर।

एक मंदिर है जिसको फूल से सजाया हुआ है मंदिर के दीवार पर --